एक कोई क्रिश्चन गॉड का फोटो दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें एक बड़ा सा गोल आकृति का बना हुआ एक--

यहां पर हमें एक घना सा--

एक फार्म हाउस सा एक घर दिखाई दे रहा है।

और ऊपर की तरफ इसमें लाइट जलती हुई दिख रही है।

इसमें हमें एक ऑफिस दिखाया गया है।

और इस कार का रिपेयरिंग का काम शुरू हो रहा है।

दो टायर भी हमें यहाँ रखे हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर --

अंदर जाने के लिए रास्ता दिखाई दे रहा है।